और इन्होने वाइट रंग की ड्रेसे पहन रखी हैं। यहां काफी सारा झालर लगाई गयी है पीछे एक ईसा मसीह की मूर्ति रखी गयी है सामने एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।